और वाल को बहुत ही खूबसूरत लाइटों से सजाया हुआ है सामने बहुत सारे चेयर्स लगाए गए हैं।

ये रंग-बिरंगी पोशाक में है जो बहुत ही सुन्दर लग रही है देखने में।

जहाँ लकड़ी का नक्काशी किया हुआ बहुत सारे सामान दिख रहें हैं| डमरू है पेन सेट है कंघी है और भी बहोत लकड़ियों का बना सामान भी है।